इ बुद्ध भगवान के मन मन मूर्ति ह। इ --

बढ़िया बा न ठीक ठाक बा न उ।

सुन्दर विवाह बढ़ियां

गली में बैठल बा लोग। एक जाना होने खड़ा बाली।

ए दू तीन जना बैठल बा दुइ जना बाए देख के चलावता लोग एके।

आदमी खड़ा बा गई गाड़ी घोड़ा खड़ा बा।

मढीयाँ बा एमें कु कुर्सी सोफा -ओफा लागल बा।

समज में नाइखे आव्ल लेकि देख तानी जा।